दुकान बहुत बड़ा और सुंदर है।

दूकान में बहुत सारे खिलौने भी रखी हुई है।

वहां में बहुत सारे आदमी खड़े हैं एक आदमी के हाथ में मोमबत्ती है।

फंसन में बहुत अच्छे लाइटिंग की गई है।

कगरबत्ती भी रखी है।

तालाब में बहुत पानी है।

सामने में बहुत सा आहार में आदमी नहा रहे हैं।

गार्डन में बहुत सारे हरे भरे घास है।

सामने में बहुत सारे पेन भी दिखाई दे रहे हैं।

गेट पर ब्राउन कलर है।

यह एक मोबाइल शॉप है।

दुकान में एक साड़ी भी रखी हुई है।

सामने में बहुत सारे घर भी है।

दुकान के आगे में एक दिव्या प्रबी फैंसी साड़ी लहंगा का बोर्ड लगा हुआ है।